गाड़ियां नजर आ रही है। ठेले वाले नजर आ रहे हैं जो कि फल बेच रहे हैं।

तो जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हो। इस तस्वीर में ये छोटी सी बच्ची --

रस्सी है। जिससे बॉडी बनती है।

जैसे कि तस्वीर को देख रहे हो। इस तस्वीर को तो देख कर समझ ही गए हो यह एटीएम --

और पीछे की डिजाइन की बात की जाए तो बहुत ही बारीकी तरीके से की गई है।

तो जैसा कि दोस्तों आप इस तस्वीर को देख रहे हैं ये है ताजमहल।